यहां पर अंदर में एक लाल कलर की कुर्सी भी दिख रही है।

यहां पर नीला आसमान छाया हुआ है।

यहां पर बीच में एक ऑरेंज कलर का लाइट जल रहा है।

यहां पर रिसेप्शन में एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

यहां पे इस बच्चे ने ब्लू और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

यहां पर बीच में एक बड़ा सा ग्रीन कलर का ट्रक दिख रहा है।

यहां पर दाहिने तरफ वाले आदमी ने ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

यहां पर बाहर में नीचे में छोटे छोटे ग्रासेस उगे हुए हैं।

यहां पर बीच में काले कलर के कपड़े भी रखे हुए हैं।

यहां पर एक लड़की ने ऊपर से नीचे पूरी पिंक कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पर इस घर के टिने का रंग ग्रीन कलर में दिख रहा है।

यहां पर पीछे में बहोत सारे बरे बरे पेर दिख रहे हैं।

यहां के डेक्स बेंच के रंग ग्रे कलर में दिख रहा है।

यहां पर इस कुर्सी के नीचे के स्टैंड को लोहे से बनाया गया है।

यहां पर दाहिने तरफ में दो लाइट ग्रे कलर की बर्ड रखी हुई है।